कुछ ने काले कलर के कपड़े पहने हुए है। तो कुछ ने काले कलर के तो कुछ ने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए है।

एक बच्चा वहीं पर बैठा हुआ है लाल कलर की शर्ट पहने हुए है वहीं पर दूसरी बाइक भी खड़ी हुई है ।

कुर्सियों के सामने एक ब्रेंच भी रखी हुई है। पास में ही कांच के गिलास भी रखे हुए --

रात का समय है कुछ सीरीज भी जल रही है ऊपर से कुछ तार भी निकले हुए हैं पास में ही एक बिल्डिंग है जो सफ़ेद --